यहां पर वाइट कलर की चेयरस --

यहां पर हमें गमले भी पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर हमे लाइट्स जगी हुई दिखाई दे रही हैं।

स्कूल बस नजर आ रही है।

इस बिल्डिंग का कलर ब्लू है।

और भी बहुत सामान नजर आ रहा है।

यहां पर रेड बोर्ड पर हमें बाल दाढ़ी--

बहुत सारी व्हाइट कलर की कार्स नजर आ रही है।

पिक्चर में हमें दीवार पर गुरुकुल गवरमेंट --

इस पिक्चर में हमें व्हाइट कलर की--